धुर में जिंदगी मिलती है जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे बचाने के लिए हॉस्पिटल हमारी बहोत सहायता करता है।

भूसा चारा प्राप्त होता है हम --

लड़का-लड़की खड़े किये जाते हैं और यह बैठने की सीटा है जहाँ पर जनता बैठती हैं।

सुविधा के लिए यह रेलवे ट्रैक बनाया गया है। ऊपर इसके यह ब्रिज है जिसपे की इंसान की दुर्घटना न होने के कारण यह ब्रिज बनाया गया है। जिससे की एक साइड से दूसरे साइड को पार कर सकता है।

ये जहाँ-तहाँ स्टेशनो पे अदरवाइस बस अड्डों पे जहाँ-तहाँ बैठने के लिए स्टैंड लगा दिए जाते हैं। ये कुर्सी --